ठंडे शीतल जल में स्नान कर रहे हैं यह काफी--

कुछ टी सट है और हुडी शॉर्ट और भी अनेकों तरह के कपड़े यहां लगे हैं कुछ ब्लेज़र के भी --

जहां पे काफी अच्छी घास उगी है।

यहां बहुत सारी बैलून लगी हुई है।

मेडिकल स्टोर और मसाले की दुकान नजर आ रहे हैं।

खुदाई की गई है यहां पे रेड रखा गया है।

है कि यह एक घर है।

यहां पे बहुत सारे छोटे छोटे से प्लांट्स को पैक किया गया है।

कुछ इस में सो के पेड़ हैं तो कुछ इसमें फूल्ल के पेंड़ हैं।

जैसे ही लग रहा है कि--

निकले जा रहे हैं धोने के लिए एक और व्यक्ति यहां ऊपर जा रहा है।